सुन्दर लग रहा है वृक्ष भी बहुत बड़ा-बड़ा--

सामान से भरा हुआ है अच्छा लग रहा है बहोत सुंदर लग रहा है बड़ा काफी बड़ा विशाल मॉल है।

बहुत सुन्दर है समुन्दर इसका पानी बहुत खारा होता है बहुत अच्छा लग रहा है लहरा रहा है पानी बहुत अच्छा--

ये बिल्डिंग में है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत लंबा - लंबा तार खंबा है और तार खंबा दिखाई दे रहै हैं और अच्छा रेसो सुंदर रोड --

यहाँ आदमी लोग जिम करने आते हैं सब ज़िम कर रहे है बहुत सारा आदमी है बहुत जिम करें रहे सुन्दर है इसका --